और कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं।

और रेलवे और एक दरवाजा भी है।

और एक कुर्सी भी रखी हुई हैं।

इसके अंदर कुछ पंख लगे हुए हैं और कुछ बॉक्स में रखे हुए हैं।

पास में दो गमले रखे हुए है।

और बाहर कुछ गाड़ी भी खड़ी हुई है।

और कुछ मूर्तियां भगवान की है।

और दुकान के बाहर एक खंभा हैं और कुछ बाइक खड़ी हुई है।

पास में एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

यह एक खेलने का मैदान है।

और मैदान में छोटे छोटे घास उगे हुई है।

और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और एक खंभा भी है।

आसमान में कुछ बादल भी है।

यह एक पलेम्बर की दुकान है।

यह एक ऑफिस है जिसमें दो मैज और कुछ कुर्सियां रखी हुई है।

जल रहे है आसपास कुछ पौधे और घास लगी हुई है।

और एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

और एक चेयर पर तौलिया भी रखा हुआ है।

जिसके सामने दो एल_सी_डी लगी हुई है और एक चेयर रखी हुई है।

आस पास कुछ खिड़की लगी हुई है जिनपर रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है।

और पास में एक पौधा भी है और कुछ व्यक्ति भी है।

घर के बराबर एक दुकान भी है।

और सोफे भी रखे हुए हैं।